पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

दीवार में लिखा हुआ है होटल ।

एक बाइक में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं बाइक का कलर है लाल और काला है।

ऊपर नीला रंग का आकाश भी दिखाई दे रहा है।

और बाइक भी दिखाई दे रहे हैं।

और व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे हैं दीवार में रंग बिरंगे का पेंट किया गया है।

बाहर बल्ब लगाए हुए हैं एक दीवार घड़ी लगा हुआ है।

एक डेग़ भी दिख रहा है और डी_जे भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे--

एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

ब्राउन कलर का कॉरपेट भी बिछाया हुआ है जमीन में टाइल्स लगे हुए हैं।

पे बहोत बड़ा बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

पानी टंकी भी दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है दीवार का कलर है ब्लू।

और रोड भी दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं।

एम का कलर है ब्लू और एक पिकअप भी दिखाई दे रहे हैं।

बल्ब लगाया हुआ है और टी_वी भी लगा है दीवार में पोस्टर भी लगा--

घर में एक पंखा भी लगा हुआ है कुर्सियां दिखाई दे रहे हैं।